ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ है।

बहोत अच्छा डिजाइन बनल है। घास वगैरह भी लगा हुआ है।

बहुत ही घटा सा दिख रहे हैं।

परनाम के साथ फोटो खिंचवाया है। मां सरस्वती का फोटो है।

भी बनाई है। सोफा में बहोत अच्छा बना है।

दूगो सोफा है। बइठल है सोफे में आइये दूगो सोफा दिखाए बहोत अच्छा दिख रहा है। सिल्वर कलर का भी दिख रहा है। डिज़ाइन बहोत अच्छा डिज़ाइन है।

शिशु विद्यालय है।

यहाँ एक छोटू है। टोटो का बहोत अच्छा दिख रहा है। चारों तरफ भी दिखा दे रहा है फिगर टोटो का।

पत्थर में पानी बहोत अच्छा है--

देखने में बहोत अच्छा --

और कुछ अलबेस्टरइन्वेस्टर का बिल्डिंग है।

चने के लिए कुछ --

हे एक वेदांता बुक बुक्स वॉडल्ड है वोल्डर वर्ल्ड यहाँ किताब सारा बिछाया जाता है। एक आदमी भी खड़ा है आगे।